एक न्यू घर का चित्र है । जिसमे कई सारे व्यक्ति इस घर मकान को बना रहे है और इस मकान मे कई सारे बांस बल्ली भी गड़े हुए हैं ।